ये एक फल की दुकान है यहाँ पे बहोत सारा फल रखा हुआ है साफ-सफाई का बहोत ध्यान रखा गया है ताकि मच्छर कीड़े इसमें नहीं पड़े।

ये एक उच्च विद्यालय है यहाँ पे हेल्थ कैम्पिंग चल रही है तो कुछ लोग फोटोशूट्स कर रहें हैं हेल्थ कैम्पिंग के लिए घास में --

वो अपना कटिंग करवा रहा है शेव भी करवा रहा है और पंखा रुका हुआ है ठण्ड का टाइम है अगल-बगल में लाइटिंग बहुत सारी दिखाई दे रही हैं।

कपड़ा ढका हुआ जो है वो कपड़ा बहुत ही महँगा सा दिखाई दे रहा है चेयर बहुत अच्छी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारा दिखाई दे रहा है सामने में।

बच्चे लोग टेबल के ऊपर में अपना क्राफ्ट का सामान दिखा रहे है। बना बना के और यहाँ पे एक लेडिस है जो इन लोगो को जज कर रही है उनका सामान देख रही है।

ये एक गयम है जहा पे लोग अपनी फिटनेस का काफी देहं ध्यान रखते हैं ता क ताकि वो लोग फिट रहें बिलकुल किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज उन्हें न हों स्वास्थ्य हेल्थ चोट इंजरी ना हो अगल बगल मुख्य में बैनर लगा हुआ है बॉडी बिल्डिंग का ।

एक व्यक्ति अपना फोटो शूट करवा रहा है हेलमेट रखा हुआ है जमीन के अंदर काफी पतला सा रास्ता यहाँ पर लोगों को चलने के लिए यहां पेड़-पौधे बोहोत सारे हैं जमीन में बोहत सारी पत्तियां गिरि हुई हैं।

अगल बग़ल में साफ़-सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है हवन आरती जिसमें होती है वो वाला यहाँ पे रखा है।

ये एक सैलून है जिसमें एक रूम में यहां पे मसाज पार्लर जहां पे बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए इस चेयर पे लेट के--

मूर्ति दिखाई दे रही है जो की काफी ज्यादा पुरानी है अगल-बगल में ग्रे कलर-- जब भगवान जी हम लोग को आशीर्वाद देते हैं इन्हीं के नाम से वह करके सारा काम शुरू करना चाहिए।

इस बिल्डिंग का ऑरेंज लाइट ऑरेंज कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है।

एक बैंक का ए.टी.एम दिखाई दे रहा है जिसमें टवेन्टी फॉर इंटो सेवन खुला रहता है एक व्यक्ति इसमें --